कि देखिए आपको एक महल जैसा दिखाई पड़ रहा है देखे यहां पे कुछ व्हाइट कलर का कलर किया गया है और यहां पर देखिए आपको बाहर खम्भा दिखाई पड़ रहा है देखिए खम्भा में कुछ आपको बिजली के तार जाते हुए दिखाई पड़ रहे है।

यहाँ पर देखिए आपको येलो कलर का बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है।

यहां पर देखिए आपको एक बड़ी-सी नदी दिखाई पड़ रही है नदी में आपको छोटी-छोटी घासे दिखाई पड़ रही है कुछ घासे उस तरफ भी दिखाई पड़ रही है ।

लेफ्ट और राइट हैंड साइड मे बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे होंगे देखिये कुछ छोटी छोटी घास जमीन पर भी दिखाई पड़ रही होंगी।

देखिए यहां पे बॉल भी है यहां पे कुछ गमले रखे हुए है और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है देखिए पेड़ में कुछ पोस्टर लगे हुए है लेफ्ट हैंड में कुछ पेड़ अ- लेफ्ट हैंड साइड में भी लगे हुए हैं।

यहां पर देखिए आपको ग्रीन कलर के दरवाजे दिखाई पड़ रहे है तीन ग्रीन कलर दरवाजे देखिए एक आपको खम्भा लगा उसमें कुछ पोस्टर दिखाई पड़ रहे है।

ओर यहा पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। बच्चों का खेलने का यहाँ पे ऊपर पोस्टर लगा हुआ वॉल का कलर है जो ब्लू कलर का है वॉल पे देखिए एक केमरा दिखाई पड़ रहा है कुछ सर्ट टंगी हुई है यहा प--

यहा पर देखिए आपको सीढिया दिखाई पड़ रही है देखे सिरा वाइट कलर की है और बॉल बनी हुई है यहाँ पर देखिए टेबल दिखाई पड़ रही है आपको और यहाँ पे देखे पकड़ के चढ़ने वाला है जो ब्लेक कलर का है यहाँ पे देखे बहार आपको एक पेंटिंग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर इनके ऊपर आपको एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है।

यहां पर भी कुछ फिसल पट्टी दिखाई दे रही है देखिए सामने आपको कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और यहां पे देखिए कुछ बादल का कलर भी अच्छा लग--

और पीछे आप देखेंगे तो आपको कुछ फ्लावर्स दिखाई देंगे फ्लावर डेकोरेशन की गई है यहाँ पे व्हाइट कलर के पीछे पर्दे रखे हुए है।